पार्थ के जमीन का रंग पीला तथा लाल रंग के रूप में है।

कुछ कपड़ों का रंग सफेद है आसमानी है हरा पीला गुलाबी भी है।

यहां पे कई सारे भगवान जी वाली डायरीया हैं।

यहां पे पेन भी है यहां पे लाल रंग की लक्ष्मी गनेश जी का किताब है किताब-कॉपी का रंग ला --

कंटिया भी रखी हुई है यहा पे कलछुल भी है।

जो डांस कर रहे हैं यहां पे फर्श पे टाइल्स भी लगा हुआ है यहां पे एक बड़ा आदमी भी है।

कुछ बड़े बड़े पोस्टरस भी लगे हुवे हैं इस मॉल के अंदर बहुत जड़ा भीड़ दिख रहा है यहां पे कुछ कटलेश भी खड़े हैं।

यहाँ पे ब्लू रंग पे डॉक्टर का नाम लिखा है। इस घर मे कई सारे खिड़कियाँ भी हैं।